वेलकम द स्मार्ट वर्कशॉप लिखा हुआ हैं।

और सामने कुछ हरी घास भी दिखाई दे रही है और कुछ हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

उम्म ढोलक के चित्र बने हे और एक लड़की का चित्र बना है जो--

--जो मटका लिए जा रहे है ऊपर कुछ भी पेड़ भी दिखाई दे रहे है हरे रंग के--

--पेड़ भी दिख रहे है और कुछ बड़े पत्थर भी दिख रहे है और कुछ चट्टान भी दिख रही--

अम्म ब्लैक रंग की जैकेट पहने हुए है और सामने एक सफ़ेद रंग का--

खुली हुई है और ऊपर एक नीले रंग का बोर्ड --

बस्तक डेरी फॉम लिखा हुआ है और बाहर --

तीन चार बोर्ड दिख रहे है सामने पंडित मिस्त्री लाल--

दो तीन गाड़िया भी रखी हुई है और एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा है और नीले कलर का बोर्ड भी--

बोतल भी रखी हुई है।

इस इमेज में मकान का छत ढलते हुए --

स्टील की रेलिंग लगी हुई है और कुछ पेड़ भी लगी हुई है।